इस चित्र के अंदर एक स्कूल शॉप की शॉप का सामान है और यहां पर तीन बैग ढंगे हुए हैं स्कूल के।

ये एक कॉफी सेंटर है और इस चित्र के अंदर दिखाया गया है ऊपर कॉफी कुछ लिखा हुआ है तब--

पास में ही एक कार खड़ी हुई हैऔर उसके पास एक ब्लू कलर का कुछ बोर्ड दिख रहा है और ये सामने खम्बा है।

और सब चेयर्स पिंक कलर के कपड़े से कवर है और एक चेयर है जो रेड कलर की है वो कवर नहीं है पास में एक गुलदान रखा है उसमें तीन --

पत्ते लगे हैं बड़े-बड़ेऔर सामने देखे तो दो छोटे-छोटे--

इस चित्र में हमें दिख रहा है कि यहां पर लकड़ी का काम हो रहा है पी_ओ_पी का और सामने आधा अधूरा काम है सामने टेबल है उसके ऊपर फेविकोल के--

आधे पे पीयूपी चढ़ी है आधे पे ऐसी ही है सादा सिंपल सा है।

इस चित्र के अंदर हमें एक किराना स्टोर दिख रहा है उसमें काफी सारे बच्चों की चीजों के आइटम और पेट्स वगैरह रखे हुए हैं नीचे।

पांच के अंदर और ऊपर ब्लू कलर का शटर है इसका इसमें मेगी पास्ता शैंपू और बिन्स क्रीम वगैरह।

इस चित्र के अंदर वो काफी ज्यादा सजावट है ऊपर पिंक कलर कीऔर ग्रीन कलर की फूलों की लड़ियों से है और कपड़ों की लड़ियों से है।

और यहां पर दो टेबल लगी टेबल डबल कलर के शेडेड में है ऑरेंज और ग्रीन ।

उनके नीचे जो सीमेंट हैवो उनको रेड कर रखा है।

और यहां पर तीन व्यक्ति दिख रहे हैं जिसमें एक महिला है एक पुरुष है और एक बच्ची है महिला बैठी हुई है पुरुष कुछ सामान को--

देख रहा है और बच्ची के हाथ में भी कुछ सामान है यहां पर लाल और नीले कलर की डलियां रखी है और ये सारा सामान स्टील का दिख रहा है।

और साइड में दीवार भी सजी हुई है उस पे भी कुछ चित्र है और सामने ग्लास --

ब्राउन कलर के डब्बे हैं ब्लू कलर के हैंऔर एक डब्बे पे यहां पर अमेरिकन इंस्टिट्यूट आउट लिखा है।

वहां पर वेज भी है और नॉनवेज भी हैऔर ये समझ में नहीं आया चिकन वेज कैसे हो सकता है नॉनवेज तो है ही चिकन ।

वैष्णव ढाबा चंबा ढाबा है और यहां पर दो ढाबे दिख रहे हैं जिसमें एक ढाबे के पास में कुर्सी रखी उसी के पास एक--

ये एक बैटरी की शॉप है सिल्वर बैटरी शॉप है यहां पर ई रिक्शा की बैटरीज वगैरह मिलती होंगी।

इस शॉप के अंदर एक दो चेयर रखी वाइट कलर की--

ये एक जोनी आर्ट्स की शॉप है इसके ऊपर छत पे एक बच्चा खड़ा हुआ है आसपास नीम के पेड़ लगे हुए हैं।

और इसमें ये रंग बिरंगी मालाएं टंगी हुई है कलरफुल पास में खंबा है खंबे के ऊपर टायर के ऊपर के जो--

ये एक हाईवे रोड है इस रोड के आसपास सीमेंटेड पुल बना हुआ है जिसमें बॉर्डर कहीं-कहीं डार्क ब्लू कलर की दे रखी है।

और यहां पर शायद घर की मरम्मत हो रही हैया सफाई हो रही है इसलिए सोफों को बाहर पटक दिया सोफों के पीछे बांस पड़े हुए हैं बहुत सारे।

एक कूलर का ऊंचा सा स्टैंड रखा हुआ है एक सोफे के पीछे और सोफे के सामने दो कुर्सियां रखी हुई है।

और दोनों कुर्सियों के ऊपर दो सामान रखे हैं एक के ऊपर गुलाबी कलर का टब रखा हुआ है और एक के ऊपर ग्रीन कलर की बाल्टी --

उसके ऊपर लिखा हुआ है ग्रीन कलर से सर्विस और ऑरेंज कलर से फोर्स लिखा हुआ है।

और एम_जी ग्रैंड हैं ये और यहां पर जो पर्दा डाला है वो भी ऑरेंज और ग्रीन कलर का है ये पर्दा जो स्क्रोलिंग वाला है।

और अंदर नीचे एक व्यक्ति खड़ा है ब्लू कलर की शर्ट पहने हुए।

इस चित्र के अंदर जिम वालों के लिए काफी सारी जो मेडिसनस और प्रोटीन वगैरह होते हैं उस चीज को दर्शाया गया है।

और मीडियम साइज के भी है छोटे साइज के भी है कुछ पाउच में भी है।

और उसके पास एक ब्लू कलर का खंभा लगा हुआ है सामने एक टेबल लगी हुई है।

इस पिक्चर के अंदर शिव शक्ति ट्रेडर्स को हाईलाइट किया गया है।

इसके आसपास दो वाइट कलर के शटर है और इसके अंदर काफी सारे व्यक्ति हैं बाहर एक महिला खड़ी है शॉल ओढ़े।

अंदर ग्लास का कैबिन बना हुआ है और अंदर दो पुरुष और हैं।

और ब्राउन कलर के यहाँ पर टेबल और चेयर है टेबल के ऊपर एक लैपटॉप है और उस पर कुछ बुक्स भी पड़ी हुई है सामने का जो है उस पे--

अ एक बोटल रखी हैऔर आसपास चार्जेर्स वगैरह टंगे हुए हैंऔर इसका जो गेट है वो ग्लास हाफ ग्लास और हाफ--

यहाँ पर एक छोटा सा घर दिख रहा है घर का दालान बहुत ही साफ सुथरा अच्छा लग रहा है पुराने जमाने का है पट्टियां बने हुए हैं दो खंबे हैं।

ग्राउंड के अंदर छोटी-छोटी घांसे उगी हुई है और पास में एक लाल कलर का ईटो वाला घर बना हुआ है।

और कुछ बेल भी फैली हुई है शायद गिलकी की बेल है।

बिलकुल सेंटर में झूमर टंगे हुए हैं दो-तीन और लाइटिंग से काफी अच्छी सजावट हैऔर इसमें चेयर रखी है ब्राउन कलर की और काफी व्यक्ति खड़े हुए हैं।

इस चित्र के अंदर बहुत सारे स्वेटर दिख रहे हैं कलरफुल कलरफुल स्वेटर दिख रहे हैं और बहुत सी पन्नियों में पैक है।

और उम इस कुए के अंदर पानी भरा हुआ हैऔर यह बहुत ही सुंदर लग रहा है छोटे-छोटे गंदे-गंदे से कचुए .